यहाँ पर देख सकू ये पूरा एकदम दिख रहले हरा नीय एकदम पूरा गाछ ढेर मनी इ लग रहले कहीं के डैम है |

यहाँ पर भी देख सकों कितना बढ़िया फोटो है पूरा पहड़ा आगे दिख रहलौं फोटुआ एकदम पहड़ा पे एगो मंदिर है यहाँ एगो झंडा गाड़ल है तीन-चार गो घरा में। यहाँ पर एगो देखिए मट्टी के घर है। यहाँ पर पकवा वाला घर --

प्राइस लेस फिर वी मार्ट और इधर लिखा फैशन और इधर पर तीन-चार गो भैया लोग सब है और इने पर वाचमेन खड़ी है वहां पर वो ए गो अपाच अपाची लगी है।